मंदिर है और होटल मधेपुरा है लक्ष्मी टेलर्स यहाँ बाइक लगे हुए है वहाँ बाइक सब जा रही है दिन का टाइम है एकदम अच्छा लग रहा है ओ_पी लग रहा है क्या ही बोले इसके बारे मे।

पुस्तकालय है बाईके लगी हुई है। नीचे घास है। ऊपर टंकी लगा हुआ है। एक पेड़ है और यहाँ बा घास है वहाँ पे टावर है अच्छा लग रहा है क्या ही बोले ---